ये कुछ बैंक दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एस_आइ_एस_आइ_सी_आइ_सी बैंक --

काले रंग का और रेड कलर और ब्लू कलर का एक भूत सा टंगा हुआ है।

हरी हरी हरि हरि घास भी लगी हुई है और यहां पर--

और पेड़ के नीचे जस्ट एक सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है।

यह पेट्रोल पंप है यहां पर दो पेट्रोल पंप के थंब बने हुए हैं।

और यहां पर एक लड़की ने ब्लैक एंड येलो कलर की टी शर्ट भी पहनी हुई है और रंगोली बहोत हि सु

और यहां पर एक वाइट कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई है।

और यहां पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है नाइन सिक्स थ्री फोर नाइन जीरो डबल नाइन नाइन ।

वो जो दो सामने लड़का और लड़की खड़े हैं उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट और ब्ल्यू कलर की पेंट पहनी हुई है और जो लड़की फोटो खींच रही हैं उसने ब्लू कलर की --

इनमे से एक लड़के ने ब्राउन कलर की टी-शर्ट पहनी है एक लड़के ने महेरून कलर की एक ने ग्रीन कलर कि एक ने --

इनमें से दो ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है एक ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है और पीछे एक आदमी बैठा हुआ है।